इस चित्र में बहुत सारा नया नया साइकल रखा हुआ नजर आ रहा है।

चित्र में पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही पीछे में ईटा का घर भी दिखाई दे रहा है ।

और ये एक बिल का मीटर भी है।

ब्रश और कोलगेट भी नजर आ रहा है।

और यहा परी बहुत सारा लाइट जलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और ये दो ए_सी लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक सब्जी का दुकान नजर आ रहा है और यहां पर ये दो महिला एक पुरुष से सब्जी लेते हुए नजर आ रही है।

और यहाँ पर ही ऊपर दीवाल का वाइट कलर भी नजर आ रहा है।

और यहां पर भी दो चेयर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में पूरा नीला आसमान और धूप नजर आ रहा है।

इस चित्र में हरा कलर का कारपेट बिछा हुआ भी नजर आ रहा है।

व्हाइट और कथ्था कलर का कारपेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में आसमान नीला और बादल से दिखाई दे रहा है।

कारपेट पूरा चॉकलेट कलर का बिछाया हुआ नज़र आ है।

यहां पर एक पुरुष खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा--

और यहां पे एक ऐ_सी भी दिखाई दे रहा है।

झंडा फहराया जा रहा है यहां पर बहोत सारा पुरुष और महिला और बच्चे भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

चित्र में बादल का मौसम हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक बहुत बड़ा बगीचा नजर आ रहा है।